सामने काफी सारे नेवले है और उसके साइड में बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं।

बड़ा सा रेलवे स्टेशन है। यहा पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। अभी एक बड़ी सी ट्रैन नज़र आ रही है। ।

और सीसीटीवी कैमरे भी नजर आ रहे हैं यहाँ सामने काफी सारी खिड़कियां नजर आ रही है।

काउन्टर नजर आ रहा है।

एक रेलवे स्टेशन है यहां पे ट्रेन खड़ी हुई है।

काफी सारे पेड़ नजर आ रहे हैं और एक बड़ा सा मंदिर भी नजर आ रहा है उसके पीछे भी काफी सारे पेड़ नजर आ रहे हैं और आसमान भी नजर आ रहा है।

काफ़ी घने-घने पेड़ नजर आ रहे हैं और हरी-हरी घास भी नजर आ रही है और आसमान भी नजर आ रहा है।

उनके पीछे एक बड़ा सा स्कूल नज़र आ रहा है जिसका एक बड़ा सा गेट है और बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं और काफ़ी सारी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं।